ये इमेज़ में एस_बी_आई बैंक देखने को मिल रहा है।

के ऊपर खिड़कियां नज़र आ रही है। उधर सीढ़ी पे से एक आदमी उतरता हुआ नज़र आ रहा है।

ये इमेज़ किसी जिम की लग रहीं हैं। इसमें जिम का समान नजर आ रहा हैं। तीन बॉल रखीं हुई नजर आ रहीं हैं।

अह दीवाल के ऊपर कलर करा हुआ नज़र आ रहा है इधर बॉक्सिंग --

कुछ बच्चे इधर से उधर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं एक औरत खड़ी हुई कुछ समझा रही है।

इस इमेज में रोड क्रॉसिंग का दिख रहा है एक हिंदुस्तान का झंडा लगा हुआ नजर आ रहा है।

पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं सूखी घास दिखाई दे रही है खंभे नजर आ रहे हैं।

बहोत सारी लाइटें लाइटें लगी हुई नजर आ रही हैं।

यहां पे रेलिंग में कुछ आ रहे हैं।

न नीचे दो गमले रखे हुए नजर आ रहे हैं।

ये किसी जिम की इमेज नजर आ रही है इसमें बहुत सारी मशीने दिख रही है कुछ गोल कलर की चक्र रखे हुए हैं पीछे होम थिएटर नजर आ रहा है।

पानी बहता हुआ नजर आ रहा है डैम का बांध खुला हुआ नजर आ रहा है ऊपर एक ब्रिज नजर आ रहा है।

चीज का सामान नजर आ रहा है एक फ्रिज नजर आ रहा है।

कान मे लगाने के इयर बड्स लेकर आ रहे हैं।

पीछे एक शायद स्कूल नजर आ रहा हैं जिसमे दो खिड़की नजर आ रही है रैलिंग बनी हुई है दीवारें नजर आ रही है।

अंदर बॉक्स में बहोत सारी कपड़े दिखाई नजर आ रहें--

इस इमेज़ में एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप दिखाई दे रही है जिसमें--

कुछ बॉक्स पे सूर्य लिखा हुआ है टेबल के ऊपर कुछ पंखों की परखुड़िया रखी हुई है बाहर कुर्सिया हुई नजर आ रही है।

पेड़ नजर आ रहे हैं लड़कियों के सर पे येलो कैप नजर आ रही है।

इस इमेज में तीन लोहे की रखी नजर आ रही है एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ नजर आ रहा है एक खाली चेयर नजर आ रही है।